बेच रहे है। मछली बहुत अलग-अलग प्रकार की है। मछली वाला मछली बेच --

टोकरी मे काफी अलग-अलग प्रकार के फूल रखे हुए है।

अह बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है जो काफी अच्छे लग रहे है।

नारियल के बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है कुछ छ पेड़ छोटे-छोटे भी है अम नारियल के आस पास--

एक न तालाब किनारे काफी सारी हरियाली हो रही है।